यहाँ पर एक पोंड दिखाई दे रहा है जिस के पास से जो घाट है--

आ नोधी में जैसा होता है बड़ा बड़ा सीले के घाट होता है।

ऐसा है वहाँ पे कुछ तम्बू लगया है।

कुछ जगह पे जो कैंडल लगा जला हुआ है यहाँ पर कोई आदमी औरत लोग यहाँ पे खड़ा है कोई अंदर जा रहा है।

और यहां पे अंदर में भी कुछ आदमी औरत लोग खड़ा है।

यहाँ पे बड़ा से बिल्डिंगज़ दिखाई दे रहा है जो कोई इंस्टिट्यूट का --

एक बस खड़ा है यहाँ पर बाहर जो रास्ता है वहाँ के कुछ नर का लोग आदमी लोग--

यहाँ फ्लोर पूरा वाइट है यहाँ पर लाइट जला हुआ है अभी रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर नहीं है।

जो गेट है वो यहाँ पे अभी सजा के रखा बहुत सारे वॉल में।

अभी नीचे फ्लोरिंग जो है वो व्हाइट कलर का मार्बल देकर करा हुआ है।

यहाँ पे एक बंदा दूर में खड़ी है व्हाइट कलर का शर्ट ब्लैक कलर का पैंट पहन के--

गुट्टा-गुटका वगैरह से झूलता है और टेबल के ऊपर पर कुछ गोएम वगैरह रखा हुआ है जिसमें कुछ चॉकलेट वगैरह बिस्कुट वगैरह रखा हुआ है।

सब्जी का फलों का दुकान दिखाई दे रहा है मार्केट में यहाँ--

डिजिटल प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे वॉल में रैक में बहुत सारी चीज रखा हुआ है।

रेनबू-रेनबो कलर का बहुत सारी छतरी है छतरी के नीचे बहुत बैठने का जगह है।

रैक में शू का जो बोरी होता है ओ यहाँ पे रखा हुआ है।

लेडिज का बहुत चीज मिलता है यहाँ पे वॉल में हैंगर देकर लेडिज का जो--

ब्लू कलर का टी-शर्ट पहन के सामने मोबाइल हाथ में लेके फोटों खींच रहा है।

वो जिम प्रैक्टिस करने का जो मशीन है वो सब है।

इधर इलेक्ट्रानिक्स का दुकाने है यह दुकान के अंदर वॉल में जो रैक है काठो का रैक --

उसके ऊपर बहुत पै-सारे पैकेट मे वायरलेस ब्लूटूथ यह सब वगैरह रिमोट वगैरह सजा हुआ है।

जिनके अंदर बहुत सारी मशीनें है यहाँ पे बंदा खड़ा है रेड कलर का टी-शर्ट पहन के वॉल में काँच है।

फूल देखे सजा हुआ है धूपर से जो थम्भा है वो--

और उधर दूध में भी छोटा नाम देव नाम दिखाई दे रहा।

यहाँ पे नीचे में बहुत सारे छोटा-छोटा पेड़ दिखाई दे रहे--

यहाँ पे एक रोड़ दिखाई दे रहा है रोड़ में एक ऑटो जा रहा है ऑटो में पैसेंजर बैठे हुआ है।

यहाँ पे जो बिल्डिंग का सामने एक माठ है मिट्टी का यहाँ पर दो साइड में बड़ा-बड़ा पेड़ है।

यहां पे कुछ दुकान हैं बिल्डिंग के अंदर यहां पे रोड में चार चक्का जा रहे हैं ऑटो जा रहे पास में कुछ गाड़ी खड़ी है कुछ बंदा लोग हैं पैदल जा रहे हैं यहां पे --

यहाँ पे जो पडाड़ का झरना है ये झरना है।

पाली में भरा हुआ है बिच के पास बहुत सारे--

यहां एक बिल्डिंग है। जहां पे बहोत सारे दुकान है। यहां पे एक ब्यूटी पार्लर है।

यहाँ पे एक आदमी जो खड़ा है वो बुकस सजा रहा है उसका कुर्सी उसका पीछे है।

टीचर लेडी टीचर वो साड़ी पहन के खड़ा है और ट्रेनिंग दे रहा है माक्स पहना है और बाकी सब बच्चे लोग फीमेल मेल बोथ --

ये एक बड़ा सा बिल्डिंग है जो बैंक का बिल्डिंग जो बैंक का नाम है यूको बैंक ।

नीचे यूको बैंक का ए_टी_एम भी है उसका भी होर्डिंग है ऊपर में शाखा भी है।

उसका ही बड़ा सा होडिंग लगा हुआ है ये खुद का ब्रांच है। का--

कुछ लेब्रोटरी का जो शामान होता है टेस्टिंग करने के लिए जो--

वो पहन के स्टेज के ऊपर डेंस कर रहे हैं कोई-कोई नीले कलर का भी ड्रेस पहना है।

इस तरफ कुछ पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं घर के उस तरफ पीछे में भी घर दिखाई दे रहा है।

लोहे का बड़ा -सा नीला कलर का गेट है।

और उसका सामने एक रास्ता है रास्ते के पास में बाइक है बाइक के पास में एक बंदा खड़ा है।

जो हस्ती है उसके इधर ऊपर एक बंदा खड़ी है नीचे से कुछ खींच रहा है पानी से--

दो तल्ला बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहाँ पे कुछ दुकान वगैरह है।

साइड में ऐं-एक गेट है वो खुला हुआ है ऊपर जाने के लिए और पास में ही नीचे जो तीन-चार दुकानें हैं उन चारों दुकानों का का शटर बंद है।